दो कारीगर अपना काम कर रहे है एक चप्पल यहाँ पर पड़ी हुई हैं दूर कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

युवक के हाथ में एक मोबाइल है जो की व्यायाम की मशीन पर बैठा हुआ है।

यह एक सड़क दिख दे रही है जिस पर कुछ पुतले बने हुए हैं एक गाड़ी जा रही है ब बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है ।

इस फ़ोटो मे एक पुस्तक भवन दिखाई दे रहा है जिसमे तरह तरह के अलग अलग प्रकार के पुस्तके और किताबें रखी गई है।

यहाँ एक मैदान दिखाई दे रहा हैं जिसमें कुछ लोग मछलियाँ छाट रहे हैं तरह तरह की मछलियाँ यहाँ पर दिख रही हैं।

फ़ोटो मे एक जिम दिखाई दे रही है जिसमे व्यायम की कुछ मचीनें लगाई गई है।